यहां पर एक मंडप दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला और ऑरेंज है और उसके सामने एक आदमी खड़ा है।

काले सफेद रंग के कुर्सियां रखे हुए हैं और इधर सफेद रंग के टेबल के ऊपर बॉटल रखे गए हैं जहाँ एक यहाँ ऊपर --

उसके ऊपर एक नीले रंग का बोर्ड लगाया गया है बोर्ड के ऊपर बहोत सारे खाने की चीजे लिखी गई है।

यहां पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसका रंग हरा है और बीच में बच्चे खड़े हैं जिसने--

और यहां पर एक रिसॉर्ट है उसका रंग लाल है और उसके बाजू में एक पार्क प्लाजा ग्रीन रिजॉर्ट नाम का--

काली रंग की गाड़िया भी खड़ी है बिल्डिंग के ऊपर बहुतसारे लाईट्स भी लगी हुयी है और अंधेरा छाया हुआ ह--

सफेद रंग का एक कपड़ा है उसके पीछे भी एक आदमी खड़ा है।

और चीजे भी दिखाई दे रही हैं इधर नीले रंग का बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर हॉली--

यहाँ पर बहोत सारी मशीनें दिखाई दे रहीं हैं जिसका रंग लाल और सफेद हैं।

और यहां पर कुछ छोटी छोटी झाड़ियां भी दिखाई दे रही है और बड़ी बड़ी झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक मंदिर है मंदिर का रंग सफेद है उनके ऊपर देवताओं की मूर्ति है और नि--

यहां पर एक काले रंग की भेस दिखाई दे रही है।

यहां के घर का रंग सफेद है वो बना हुआ है पत्तरों --

यहां पर एक टेबल है टेबल के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा डाला गया है पीछे ग्रे रंग की--

यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका रंग सफ़ेद है।

और पीछे एक घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर नीले और हरे रंग का--

ये यहां पर छोटा सा पौधा भी दिख रहा है और बीच में बड़ा सा पौधा भी है।

यहां पर एक सफेद रंग की बैग दिखाई दे रही है जो बहोत बड़ी है। उसको क्रेन से उठाया गया है।

रखी गयी है अंदर एक आदमी बैठा हुआ है दो सफ़ेद टेबल है और इधर काले रंग की अलमारी भी है।

लाइट भी दिखाई दे रहे हैं इधर के फर्श का रंग सफेद है और दीवारों का रंग भी सफेद है।

खम्बे भी दिखाई दे रहे है जिसका रंग पिला है उदर के फर्श का रंग हरा है।

यहाँ पर एक क्रैन दिखाई दे रहा है जिसका रंग ओरेंज है वो काले रंग के बक्से को उठा रहा है आ--

यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर काले रंग का एक टेबल है।

महिला खड़ी है जिसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और लाल रंग का मैट भी डाला हुआ है पीछे--

सफेद रंग की दीवारें भी दिखाई दे रही है और इधर काले रंग का--

फर्श भी दिखाई दे रहा है इस काले रंग के बोर्ड लांड्री लैब ऐसा लिखा हुआ है एक चित्र भी लगाया गया है।

और बहुत सारी लड़ लड़कियां खड़ी हुई है और उधर खंभे भी दिखाई दे रहे।

यहाँ पर एक बडासा पोस्टर लगाया गया है जिसका रंग काला हरा है उसके ऊपर बोहोत सारा लिखा हुआ है।